यहा पे बहोत सारे सोफे लगाये गये गोल्डन कलर के नीले कलर के चॉकलेटी कलर --

ये एक नाव की तस्वीर है यहां पे बहुत सारे नाव है यहां पे बहुत सारे लोग नाव की सवारी कर --

कुछ लोग लगाकर खड़े हुए हैं यहां पे लोहे के दरवाजे लगाए गए हैं यहां पे कुछ पोस्टर भी लगाये गए--